आ दो कम्ब्बल रखा है मोड़ के चद्दर व्हाइट कलर का चद्दर जिस पे कुछ डिजाइन बना हुआ है बढिया चादर लगा रहा है साथ में खिड़की खुला हुआ है जिससे धूप आ रही है।